गुफा पत्थरों से बना हुआ है।

दुकानों के ऊपर कई सारे बोर्डिंग लगे हुए हैं।

इस दृश्य में हमें एक मकान दिखाई दे रहा है जो की पीले रंग का है।

मकान के पास कई सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस दृश्य में हमें कक्षा दिखाई दे रही हैं।

उनके टीचर उनको पढ़ा रहे हैं।

कक्षा में दो बोर्डे लगी हुई है।

काफी कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

यह दृश्य दिन का है।

यह दृश्य दिन का है।

साथ ही साथ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पे कुछ तस्वीरें और साथ में एक ऐ_सी लगा हुआ है।

यह दृश्य दिन का है।

इस दृश्य में हमें एक मकान दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य दिन का है।

दीवाल पर कुछ तस्वीरें लगी हुई है।

गद्दे पर कुछ तकिए और एक बैग रखा हुआ है।

किनारे पे कई सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है जिसके बाजू में कई सारे बड़े बड़े मकान दिखाई दे रहे हैं।

रास्ते में कई सारी गाड़ियां भी लगी हुई है।

यह दृश्य दिन का है।

मकानो के पास कुछ स्कूटिया और गाड़ी भी लगाई हुई दिखाई दे रही हैं।

इस दृश्य में हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक बक्सा है।

आसमान में हमें मेघ दिखाई दे रहे हैं।

साथ में कई सारे बैलून लगे हुए हैं जो अलग अलग रंग के हैं ।

बड़े बड़े पेड़ों के बीच में एक सीधा रास्ता जा रहा है।

इस दृश्य में हमें एक तेल डिपो दिखाई दे रहा है।